मकान का कलर भी अच्छा है और जो है मतलब खूबसूरत लग रहा है इसका गेट ।

और जो है रात मगधम मगधम हो रही है हरी हरी गास के सामने तालाब है और उसके ऊपर आसमान है और आसमान में सूरज जो है छुप रहा है और बहुत ही अच्छा नजारा है।

जो पब्लिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के काम आ रही है और इसमे काफी ज्यादा पब्लिक बैठी है।

और समझा रहे है और जो व्याख्यान कर रहे है किसी टॉपिक का और ये छात्र जो बैठे है ये टेबल पर बैठे है और टेबल सफ़ेद कलर का है और जो है इस रूम के परदे पिंक कलर के है।

पिलर खड़े हैं और जो है पिलर जो है कॉलम जो है ये आधे-आधे भरे हुए हैं बाकी ऊपर से सरिया --